यहां पे लोग बिल्डिंग बना रहे हैं।

यह पिक्चर पे टोटल तीन लोग हैं।

इस चित्र में एक नेचर का व्यू है।

इस पिक्चर में एक बाइक भी है।

इस पिक्चर में बहुत बच्चे पुरुष और महिला भी हैं।

इधर इमेज में ये लोग फोटो को लगाए हुए हैं।

यह चित्र है फितरल बैंक ए_टी_एम का।

चित्र मे जो एक का चित्र दिखाया गया है।